और यहाँ पे रात का समय है आसमान भी दिख रहा है।

और यहाँ पे रोड भी दिख रहा है आसमान भी दिख रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे टाइल्स भी लगी हुई है और ढेर सारे खड्डे दिखाई दे रहे हैं | कुर्सी रखी हुई है ।

और यहाँ पर अअ ब्लैक कलर की और यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं खंबे दिख रहे हैं पेड़ भी दिखाई दे रहा है सूखे हुए और हरे-हरे पत्ते भी दिख रहे हैं। आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह मन्दिर है और यह लाल कलर और पीले कलर से पेंट से बंधा हुआ है।

हरे कलर के और यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर का बाइक खड़ा हुआ है। दो-तीन ठो और यहाँ पर आसमान भी दिख रहा है और उम बाहर उम पोस्टर भी लगी हुई है लिखा हुआ है --

यहाँ हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे कि फूलों और लाइट से सजाया गया है। मंदिर के बाहर दो शेर की मूर्ति लगी हुई बनी हुई है पीले कलर की।

क्रीम कलर की और कथाई कलर की है और यहाँ पे गमले में छोटे-छोटे पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी नज़र आ रही है। व्हाइट कलर की दो फोर व्हीलर नीचे खड़ी हैं और कुछ लड़के भी नीचे खड़े हैं। आसमान दिखाई दे रहा है। बॉउन्ड्रीस दिख रही हैं। --